यह एक बहुत बड़ी स्टेशनरी की दुकान है जिसके बाहर से नाम भी लिखा हुआ है जिसमें लिखा है श्री हिंगलाज बुक डिपो ।

और बाहर से कुछ काले कलर की कुर्सियां भी रखी हुई है जिसमे व्यक्ति बाल कटाने के लिए वेट कर रहे है और एक शीशे वाला दरवाजा भी है।

और उन्हें गेंदो की माला के फूलों से सजाया गया है उसके पीछे से एक नीली कलर की शर्ट में एक आदमी खड़ा भी हुआ है और जमीन में ही लाल कलर की कारपेट बिछी हुई है।

यह एक घूमने की जगह है जहाँ पर कुछ लड़कियाँ फोटो खींच रही है और एक दूसरे के फ़ोन में देख रही है।